यह किसी दुकान का काउंटर है। जिसके आगे दो बड़े चेयर लगे हुवे हैं। काउंटर के पीछे एक चेयर लगा हुआ है। जिसपर सफेद रंग का तौलिया ढका हुआ है।

वाटरफॉल के पास कुछ लड़के और लड़कियां तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रही है।

यहां दोनों तरफ दो बड़े बड़े बिल्डिंगे लगे हुए हैं जिसमें रंग बिरंगे बत्तियां गई हुई है।

सामने का दरवाजा भूरा रंग का है।

सामने एक ढलाई का सड़क है मैदान में तीन चार खंभे गड़े हुएं हैं जिसमें तार है।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

दीवार का रंग पीला और लाल है।

यहां कुछ लोग बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कुछ बड़े तथा कुछ बच्चे भी है तथा कुछ औरत भी है।

यह किसी फास्ट फूड का दुकान है जहां एक व्यक्ति खाना बनाते हुए नजर आ रहे है।

दाएं तरफ स्टैंड के बगल में बहुत सारे कपड़े हैंगर मैं टंगे हुए हैं।

यह किसी होटल का कमरा है जिसका ऊपरी दीवार का रंग सफेद है तथा निचला ब्लू रंग का है।

यहां पे एक बड़ा सा स्टेज दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ स्टूडेंट क्रिसमस के उपलक्ष पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

ये किसी सड़क के किनारे स्थित है और एक दुकानदार बैठे हुए नजर आ रहे हैं तथा दूसरा एक फूल सजाते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने बगल में एक ड्राम भी दिखाई दे रहा है तथा लकड़ी के बहुत सारी कुर्सियां है।

ऊपर में तिरपाल से छड़ा हुआ है तथा केला का पत्ता भी हैं।

यह अमूल का दुकान है जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है अमूल के काउंटर पे बहुत बैलून तथा अन्य सामानें रखी हुई है।

दुकान के अंदर एक व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इसके बीच में एक व्यक्ति तथा एक बच्चा हाथ पकर के खड़े हुए हैं।